जो की स्मारक के तौर पर नजर आ रही है।

इस तस्वीर में हमें एक स्मारक नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में हमे एक विशालकाय साईं बाबा की मूर्ति नजर आ रही है जो की उचाई में बहुत ही ज्यादा बड़ी नजर आ रही है।

पीछे एक व्यक्ति जा रहे हैं जिन्होंने भगवा रंग का कुरता और वाइट पेंट की धोती पहनी हुई है। ये एक सत्संग हॉल की तरह प्रदर्शित हो रहा है।

और यह मजदूरों को निर्देशित करते हुए नजर आ रहे है।

और इनमे जो पटरिया दिखाई दे रही हैं ये इन्हे और भी सुंदर बनाती हुई दिखाई दे रही हैं ।